यहां मुझे कुछ टेबल दिखाई दे--

इस फोटो मे मुझे लोग दिखाई दे रहे--

यहां मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।